यहाँ एक लड़का सेल्फी लेते दिखाईं दे रहे जिसके गले पे रुमाल है और पीछे तेल के टीपे रखी हुए है बहोत सारे डिब्बे और एक व्यक्ति जाते हुए दिखाई दे रहे है जिनका फोटो ब्लर हो गया है।

यहाँ पर हमे एक चर्च जैसा दिखाई दे रहा है और झंडा दिखाई दे रहा है और कुछ लोग दिखाई दे रहे है।

हम्म बैंगनी कलर की है। और स्टार बने हुए है। गोल्ड बैंगनी कलर पे ब्लॅक कलर के भी बलून लगे हुए है।

यहाँ पर हमे ये एक व्यक्ति दिखाई दे रहे जो सफ़ेद शर्ट मे और सेल्फी ले रहे पीछे ब्रिज दिखाई दे रही है रेल्वे ट्रक वाली और काले सफ़ेद रंग से पेंट किया गया है इधर इसको।